यहाँ पर हम देख रहे हैं की धान रोपा हुआ है।

यहाँ पे धान उन रोपा हुआ हैं बहुत हरा-हरा देखने में अच्छा लग रहा हैं अगल-बगल में बहुत सारा पौधा हैं।

यहाँ पे बहुत सारा जंगल हैं इस जंगल में पेड़-पौधे हैं देखने में अच्छा लग रहा हैं यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं बहुत सारे पेड़-पौधे हैं यही हम देख रहे हैं यहाँ पे।

बहोत सारा स्टेज भी है। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। देखने में भी हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे --

बाइक पे एक आदमी ठहरा हुआ है।